दे रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं खंभा दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

यहाँ कुछ मुर्गे दिखाई दे रही है कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं झाड़ू पड़ा दिखाई दे रहा है ।

दो महिला दिखाई दे रही है एक फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है यह सामने एक टेबल दिखाई दे रही है उसे पर बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा है दिखाई दे रही है।

बैठे हूए दिखाई दे रहे है और ऊपर पंखा लागा हुआ दिखाई है न-तस्वीरे दिखाई दे रही है।